कोल्ड ड्रिंक्स वगैरा है और एक ए_सी भी लगा हुआ है।

अगल बगल में खुला मैदान भी है।

यह एक चूड़ी की दुकान है यहां पर कई साड़ी चूड़ियां की डब्बे रखी हुई है।

आगे में एक गाड़ी भी लगी हुई है एक पानी की बॉटल भी रखी हुई है और एक चेयर भी लगी हुई है।

यू_सी_एस_सी कोड भी दिया हुआ है और ये बिल्डिंग एक हरे और उजाले कल रंग का है।

ऊपर में भी दूर दूर तक जाने वाली लाइट दिखाई दे रही है सामने से एक हरे रंग की रोशनी भी दिखाई दे रही है।

इस दुकान में कई सारे फ्रिज रखे हुए हैं और सामने की ओर बहुत सारे चेयर डस्टबिन भी रखे हुए हैं।

इस दृश्य में सामने में एक ऐ_सी रखा हुआ है ए_सी के कंपनी का नाम ब्लू स्टार है।

इस दृश्य में एक फुटपाथ की ओर दिखाया जा रहा है।